एक सड़क है यह सड़क पर एक साइकिल खड़ी है यह साइकिल से बच्चे इधर से उधर जाते हैं इस साइकिल से आदमी भी चलाया जाता है।

और वर्क वर्क चॉइस में तरह-तरह के समान है। यहाँ बहुत भीड़ --

इस स्कूल के सामने मैदान है इस मैदान पर बहुत सी बड़ी-बड़ी गाड़ी खड़ी है इस मैदान में बड़े बड़े पेड़--

इस नदी के किनारे पुल जैसा बना हुआ है। यह पुल अभी शुरू नहीं हुआ है।

एक मैदान है यह मैदान काफ़ी बड़ा है इस मैदान के किनारे एक फूलों का बगीचा है इसमें तरह तरह के फुल लगे हुएँ हैं ।